और कुछ लोग भी आदमी है जो खड़े और चलते फिरते नजर आ रहे हैं।

मिस्टर इडली लिखा हुआ है और उत्सव भवन लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर।

और साड़ी में तीन सा महिलाएं हैं साड़ी में और एक आदमी उनके साथ नीले कलर के रंग के कपड़े पहेना हुआ है।